ये पहाड का व्यू लग रहा है ऐसा लग रहा है की बरसात का हल्का मौसम है हल्का - हल्का ठंड भी लग रही है।

और यहाँ पे हरा भरा काफी नजरा आ रहा है और ये फोटो ऐसा लग रा है एडिट किया हुआ है।

क्योंकि पीछे वाला पहाड़ जो है वो पुरा ग्रे कलर नजर आ रहा असमान तो नजर ही नहीं आ रहा एडिट काफी अच्छा है ।

यहाँ योग हो रहा ऐसा लग रा है यह योग हो रहा है जी-जी।

यह कॉलेज का लगता है शायद सीन है या नहीं तो कोचिंग का--

जे जित ये लग रहा है कोई फैक्ट्री वैक्टरी है जी--

आ-आ-आ फिल करो बताओ कहाँ का व्यूव हैं।

यह तो लग रहा कोई कोलेज है चाहे हां कोलेज ही लग रहा है चाहे स्कूल होगा।

बट बॉल भी जल रहा है | मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे शाम का व्यूव है क्युकी बदल भी आ रहे हैं अच्छा लग रहा है|